एक आदमी बैठा हुआ हैं और भी काफी कारें दिख रही हैं।

काफी आदमी भी दिख रहे हैं पीछे पार्क भी है और पेड़ भी हैं जिनकी छांव लग रही है यहां--

ऊपर लाईट वगैर भी लगीं हुई हैं बगल में भी एक कार दिख रही है।

एक बैनर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखाबट समझ में नई आ रही है।

खड़े हुए है और गिट्टी बालू रखी हुई है यहाँ पे।

और यहां पे सी_एम_ई_ऑर लिखा हुआ है सामने बोर्ड भी है जिसमें कुछ लिखा हुआ हैं

और लाइटिंग भी है काफी लोग हैं यहां पे मेले में बहुत लोग दिखाई दे रहे है झूले में बैठे हुए कु --

एक दो लोग खड़े हुए हैं बाहर स्कूटी खड़ी हुई है।

अभी दूल्हा दुल्हन बेठे हुए है शादिया हो रही है यहा पे।

यह पानी का सेंसर लगा हुआ है यहां पे पानी झरनों से गिर रहा है।

ये नाईट का नज़ारा है यहाँ पे काफी कुछ सजावट हुई है।

यहा पे स्कूल के बच्चे रस्त्गान कर रहे है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है सीढ़ियां हैं।